तो जी ये है एक फॅमिली रेटरोरन्ट जिसका नाम है फूड जंक्शन मे यहा से बहुत कुछ खाता पीता रहता हूँ।

तो जी ये रेस्ट्रो जो है आप इसके अंदर जाकर इनके मैनेजर से ओनर से बात कर सकते है और यहा पर डेकोरसन करवा सकते है।

तो जी ये है एक पेट्रोल पम्प जिसके राइट साइड मे आपको एक रोड दिख रही होगी जाती हुई। मेन रोड है ये और --

ये स्टार बना हुआ है। कई प्रकार के कलर है। जैसे कि ब्लू ग्रीन --

हैं यह तीन माताएँ चार प्लस में तलवार बहुत स से और दो माताएँ और ऐ इत्यादि लोग बहुत सारे --